सामने इसके कुछ रंग-बिरंगे ऊपर फूल नजर आ रहे है यह गणेश जी की मूर्ति दिख रही है नीचे इसमे गुलाबी रंग से पेंट किया गया है।

ऊपर उसमे लाल रंग से पेंट है ऊपर उसमें कुछ कपड़े रखे हुए है आसपास सफेद रंग की दीवार है।

इसमें पानी दिख रहा है पानी में इसमें पेड़ का अक्ष दिख रहा है पीछे इसमें आसमान नजर आ रहा है।